होटल का रूम ओ ये बहुत साफ सुथरा है और बहुत बड़ा भी है।

पेट्रोल पंप बहोत बड़ा दिखाई दे रहा है।

पेट्रोल पंप का कलर लाल और ह नीले रंग से--

इस तस्वीर में हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

और ये बहुत काली और साफ सुथरा--

और पेशेंट जो है इनको ब्लांकेट --

इस तस्वीर में हमें बहुत ही अच्छा जूस दिखाई दे रहा--

सोसाइटी है एक बहोत बड़ी सोसाइटी है यहां पे छह से सात लोग घूम भी रहे हैं।

यह बड़ीसी सोसायटी है। चारों ओर से यह बंद है।

और यहां पर ऐवान साइकिल और हीरो साइकिल की भी दुकान है और यहां पर अलग-अलग तरह के साइकिल --

इस फोटो में हमें एक गार्डन दिखाई दे रहा है जोकि बहोत हरा भरा है और कम दस से बीस--

मुर्गा बहुत ही बड़ा लग रहा है।

इस फोटो में हमें एक बहोत बड़ा रोड दिखाई दे रहा है। चारो ओर हरे-भरे पेड़ लगे हुए हैं।

यह बहुत बड़ी बढ़िया बढ़िया दुकान है यह बहुत साफ सुथरी दुकान--

चाह चार वे में जाती हुई रोड हैं।

यहां पर लाइन में बहुत सारे सरदार--

इस फोटो में हमें एक गाय दिखाई दे रही है।

इस फोटो में हमें सब्जी की दुकान दिखाई दे रही हैं यहां पर सब्जी और फल फ्रूट रखे हुए हैं।

ये बहोत हरे भरे पेड़ है और सामने एक टॉवर भी है।